एक बड़ी सी पहाड़ दिखाई दे रही है नीचे यहा पर एक ग्राउंड जैसा दिखाई दे रहा है जो कि लाल रंग का है जिसपे बहुत सारे मिट्टी--

अच्छा एक रेस्टोरेंट लग रहा है जहा पर बहुत सारे ए_सी वगेरा लगाए गए है।

यह एक रेस्टोरेंट के अंदर का इमेज है जहा पे एक चैयर और टेबल लगी हुई है और सामने एक सॉस रखा हुआ है।

और दूसरी तरफ यहा पे एक गली जेसी कुछ दिखाई दे रही है अगल बगल मे कुछ पेड़ वगेरा देखे जा--

ऊपर बहुत सारी लाइट की तारे दिखाई दे रही है अगल-बगल मे कुछ पिल्लर वगेरह दिखाई दे रहे है नीचे कुछ टाली सी लगी हुई है।

ये इस तरफ और भी रेल्वे प्लेटफ़ार्म देखे जा सकते है ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर कुछ सीढ़िया वगेरह बनाई गयी है ओवरब्रिज दिखाई दे रहा है ओवरब्रिज के ऊपर यहाँ पर नीले रंग की यहां पे लगाई गयी --

अगल बगल बहुत सारे स्कूटर वगेरा खड़े है अगल बगल मे कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे है ऊपर नीला आकाश है।